यह एक कपड़ो का बाजार लग रहा है।

यहां पर पंखे और लाइट लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारा सामान दिख रहा है।

यहां पर दीवारों पर फोटो फ्रेम लगे हुए हैं ।

यहां पर काफी सुंदर तरीके से गुड मॉर्निंग़ और कैरेमल लिखी हुई है।

यहां पर एक मूर्ति दिख रही है।

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यहां पर लाइट और पंखा लगा रखा है।

यहां पर सीलिंग का वाइट कलर का पेंट दिख रहा है।

यहां पर कई सारे मोटरसाइकिल पार्क की हुई है।

यहां पर कई सारी गाड़ियां पार्क की गई है।

यहां पर काफी सारे विद्यार्थी दिख रहे हैं।

यहां पर कई सारे बेंच लगे हुए दिख रहे हैं।

यह होंडा का सर्विस सेंटर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बड़ा और सुंदर प्रवेश द्वार दिख रहा है।

सीलिंग पर बहोत आकर्षक लाइट लगे हुए हैं।

ये रात का समय दिख रहा है।

यहां एक ऑटो रिक्शा भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे फैंस लगे हुए हैं।

यहां पर काफी धूप पड़ते हुए दिख रही है।